नाला है इधर हरे-भरे घास हैं इधर कार है इधर गो --

उ पानी में भी खड़े हैं कितने लोग हरे भरे पेड़ हैं।

इधर आदमी मुस्लिम आदमी है । कोई नवाज़ पढ़ रहे हैं एगो फैन है ।

बुक है बॉक्स है नीचे गुड्डे है।

उधर किताब रखा हुआ है लैपटॉप है।

ये कुरुचि खा रहा है। बोर्ड उधर बोर्ड लगा हुआ है। उधर सीढ़ी है। उधर छत है। घास-उस हरा-भरा भरा हुआ है। उधर जाने वाला रास्ता है।